ये पौधों में एक आदमी पानी डाल रहा है।

औ कितने सारे बॉयस और गर्ल्स दोनों है।

वो लोग शायद रिक्शे वाले को रुका रहे हैं।

सो ये एक रूम का व्यू है जिसने बेड है।

ये एक शॉप का व्यू है यहां पे एक आदमी दो औरतों को कपड़े दिखा--

शॉप में चेयर्स रखी हुई हैं बेंच रखा हुआ है साइड में करटेंस भी लगे हुए हैं।

ये एक जिम का व्यू है जहां पे बहोत साफ सफाई है मशीनस् हैं बहोत सारी --

और झाड़ियां भी हैं बहुत सारी पानी--

चार्जिंग पॉइंट भी दिया है और एक बेड तकिया रखा हुआ है।

जहां पे येलो कलर के फूल खिले हुए हैं।

पीछे में बिल्डिंग हैं व्हाइट कलर की जाने आने के लिए रास्ता भी है।

ये एक गैराज है जहां पर एक आदमी व्हाइट कलर के कार की सफाई कर रहा है एक पाइप से--

जहां पर बहुत ही सारी ट्रॉफीज रखी हुई है साइड में बलूंस जिसको डेकोरेट किया गया है।

ये एक स्टेडियम का व्यू है जहां पे बहोत ही ज्यादा ग्रीनरी है पीछे में लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं।

और वो दो लोग जा रहे हैं।